लड़के की मूर्ती बनी हुई है और ये लेडी है और यहां पे काफी बड़ा --

और यहां पे काफी सारी बुक मिलती हैं जोकि हम जिनसे खरीदकर पढ़ सकते हैं।

हम इस तस्वीर में देख रहे है कि ये तस्वीर एक क्लास की है।